इसके ऊपर एक व्हाईट कलर का पंखा लगा हुआ हैं वेट लिफ्टिंग के बहुत सारे प्लेट भी लगे हुए हैं।

यह एक होटल का दृश्य है जिसमें तीन आदमी दिखाई पड़ रहा है।

एक आदमी ने व्हाइट कलर का शर्ट पहन के रखा हुआ है।

टेबल के ऊपर गीलासे रखी गई है।

यह एक मंदिर का दृश्य दिखाई पड़ रहा है जिसमें एक मां काली की मूर्ति स्थापित की गई है ।

हल्के ब्लैक कलर की गाड़ी है इसके ऊपर सामान रखने वाला लगाया गया है।

दुकान के नीचे टाइल्स का काम किया गया है दोनों कॉर्नर पर दो कुर्सी भी लगाई गई है।

यह एक रिसेप्शन का दृश्य है जिसमें हेल्प डेस्क लिखा हुआ है रिसेप्शन के दोनों कोनों में दो फायर लगा गया है।

यहां एक पौधों में पानी देते हुए बच्चे का दृश्य दिखाया गया है।

जो की एक बच्चा हाथ में पाइप पकड़े हुए पौधों में पानी डाल रहा है।

एक व्यक्ति खड़ा है जो की वाइट कलर का टी शर्ट पहन के खड़ा हुआ है।

जिसमें एक लड़का है जो कि खड़ा है और उसने लाल रंग का टी शर्ट पहना है।

कुछ लड़के हाथों में अपने लाइट लेकर खड़ा हुआ है।

एक लड़के ने एक स्टील की रॉड को पकड़ के रखा हुआ है।

तीन चार लड़के ने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

एक फुटबॉल भी दिखाई पड़ रहा है ग्राउंड के चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक ढाबा का दृश्य दिखाये गया हैं।

दो टेबल भी दिखाई पड़ता है एक फोन पे का स्टीकर भी फटा हुआ है।

यह एक मंदिर का दृश्य दिखाई पड़ता है जिसके ऊपर एक त्रिशूल है।

बहोत सारे लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं।

मंदिर का रंग सफेद कलर का है।

इसमें गवर्मेंट व्हीकल भी लिखा हुआ हैइसमें तिरंगा भी चिपकाया गया है।

और एक बेसिंग भी लगाया गया है जिसका रंग सफेद कलर का है।

यह एक ज्वैलरी का दुकान का दृश्य दिखाई पड़ता हैं।

बहोत सारे चॉकलेट जो की नीले रंग के हैं उसके अंदर लोहे की एक फ्रेमिंग की गई है और भूरे कलर का भी एक आइसक्रीम रखा गया है।

इसे खाने के लिए इनको चारा डाला गया है।

यह एक स्टेज का दृश्य दिखाया गया हैं जिसमें वरमाला होने की तैयारी हो रही हैं।

ठ वेलकम टू पेब्को मोटर्स भी लिखा हुआ है।

यह एक स्ट्रीट का दृश्य दिखाई पड़ता है जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई पड़ रहे हैं।

उसमें से एक बिल्डिंग पे बाटा लिखा हुआ है।

इंडिया का भरोसे मंद पाइप जो कि ब्ल्यू कलर के बैनर में लिखा गया है।